और एक बाइक भी खड़ी हुई है यहां पर दो बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा घर है।

यह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है।

यह एक इलाइट फाइट फिटनेस है यहां पर--

चारो ओर घास उगी हुई है सभी ने--

चप्पल या जूते पहन रखे हैं।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है।

और पैंट पहनी हुई है एक ने टी_शर्ट और लोवर पहन रखी है।

और कुछ आदमी वहीं होकर खड़े होकर उस प्रदर्शन का--

स्कूल की गैलरी नजर आ रही है।

जहां पर लोग आकर सामान लेकर जाते हैं।

तीनों के ऊपर लाल कलर के सोफे रखे हुए हैं।

जनरली लाल रंग का पहन रखा है।

यहां पर शीशे के गेट भी लगा हुआ है दो पंखे भी हैं।

जहां पर मिठाई बनाई जाती है।

जो की एक शीशे के डिब्बे में रखी हुई है।

कुछ बहुत बड़ी कुछ बहुत छोटी है।

और एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

जोकि बाइक सवार है इसके पास बहुत सारे गमले भी लगे हुए हैं।